इसमें मुझे एक घर दिख रहा है।

इसमें मुझे टेबल फैन रखा दिख रहा है।

ढाबे के बाहर बहोत सारी लाइटिंग्स दिख रही है।

टेबल कुर्सी बाहर रखी दिख रही है।

इसमें मुझे बड़ा हॉल दिख रहा है।

इसमें मुझे नल फिटिंग का सामान रखा दिख रहा है।

इसमें मुझे बोहोत लोग दिख रहें हैं।

इसमें मुझे पहाड़ दिख रहे हैं।

इसमें मुझे कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

इसमें मुझे एक दुकान दिख रही है।

इसमें मुझे कुछ पलंग भी दिख रहे हैं।

इसमें एक लड़की सिर झुकाए दिख रही है।